यह एक यात्रा निकर निकल रही है जिसके आसपास काफी संख्या में भीड़ है।

यह एक स्कूल है स्कूल में एक खिड़की के पास कुच्छ बचे खडे हुए है जो कुछ--

यह एक पार्क है पार्क के बिच ओ बिच एक रास्ता गया है पार्क में कुछ छोटे बड़े पेड़ पोधे हैं कुछ--

पार्क के बीचो बीच एक एक गोल पत्थर का स्टेचू बना हुआ है वहीं कुछ है।

नीचे कुछ सामान बिखरा पड़ा हुआ है जिसके दो टायर डाले हुए हैं खुले हुए है आस पास कुछ--

है एक किला है जिसके आस पास काफी बड़ी संख्या में पत्थर--

यह एक पार्क है पार्क के आसपास कुछ खिलौने के समान लगे हुए हैं हा--

आस पास कुछ व्यक्ति हैं जो खड़े हुए हैं कुछ आपस में बातचीत कर रहे हैं पास ही में कुछ पार्टी वगैरह र--

यह एक कार है कार दोनों गेट खुले हुए है उसमें एक व्यक्ति को कुछ देख रहा है पास ही में एक व्यक्ति चलकर आ रहा है।

जो कुछ प्रार्थना कर रही है कुछ बैठे हुई है कुछ खड़ी हुई है इसमें एक व्यक्ति अपने मोबाइल से सेल्फी ले रहा है।

यह एक पार्क है पार्क के बीचो बीच काफी संख्या में कुछ के--

रखा हुआ है।

तालाब के बगल से कुछ नाव लगे हुए है कुछ सामान डला हुआ है दूर-दूर तक कुछ पहाड़ दिख रहे है जो --

जो काफी अच्छा है उसी के आस पास पार्क में कुछ व्यक्ति टहल रहे हैं कुछ घूम रहे--

अंदर एक चंदा के लिए एक लोहे का चंदा जा मस्जिद के नाम से एक बॉक्स लगा हुआ--

ये हे एक बी बल्टी बल्टी के बाहर कुछ बड़ी संखिया में पेड़ पोधे है जो काफी बड़े बड़े है।

बाल्टी के बाहर कुछ सामान रखा हुआ है जो कुछ छोटा छोटा है बाल्टी के बाहर कुछ गमले रखें हुए हैं जिनमें छोटे छोटे पेड़ पौधे हैं।

इसमें एक व्यक्ति मोबाइल से फोटो ले रहा है उसके पीछे एक व्यक्ति और पड़ा हुआ है।

जो उसको देख रहा है आस पास कुछ दीवाल है जिनपे कुछ रखा हुआ--